कोई टिकट कटवा रहे हैं या फिर अपना स्नेक्स ले रहे होंगे।

यहां पे बहुत सी दुकान नजर आ रही है अह जो कि अलग-अलग है।

लोग अपने गाड़ियों मे बाइक मे वाहन में पेट्रोल भराया जा रहा है।

गेट लगा हुआ है खाली प्लॉट में इसमें काम चल रहा है।

ईट पत्थर और भी कई सारी चीज हैं और बैक साइड में --

जिसमें बहुत से गुड़ियां नज़र आ रहे हैं आई मीन डॉल रखी हुईं है खिलौना --

बैठा है और एक खड़ा है इसमें एक बूढ़ी अम्मा भी नजर आ रही है बहोत से वाहन खड़े हैं।

कई पुरानी बिल्डिंगे दिख रही हैं जिसको मजदूरों द्वारा तोड़ा जा रहा है।